फोटो में कुछ किताब दिखाई दे रही है।

है मुझे इस फोटो में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--

एक लड़की दिखाई दे रही है मुझे इस--

फोटो में दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे--